सुधा डेरी है छोटा सा जो सुधा डेरी के सामने ए-एक मैदान है जिसमे हरा घास जमा है।

और तेल साबुन शैम्पू ब-बोडीलॉशन के फेसवाश अ खाने की चावल दाल।